और काफी सारे पेड़ पौधे यहां पर लगे हुए हैं।

जहां पर रोज पाठ किया जाता हैं और यहां पर घड़ी भी टंगी हुई है।

देख पा रही हूं एक रेस्टोरेंट है जहां पर काफी सारे टेबल रखे हुए हैं।

ये एक चर्च है मैं देख पा रही हूं ये चर्च है जहाँ पे सभी प्रे कर रहे है।

काफी सारे लोग आते जाते हैं यहां से--

ये एक पेट्रोल पंप हैं। जहां पर बहोत सारी गाड़ियां आई हुई है।

और काफी सारे लोग यहां पर आए हुए हैं।

और बैठने के लिए वहां पर चेयर है।

मैं यहाँ देख पा रही हु ये एक डांस क्लास है जहाँ पर बच्चे डांस कर रहे है।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

जहां पर काफी सारे मशीनें रखी हुई है और काफी सारे लोग यहां पर--

मै देख पा रही हु ये एक स्कूल प्रोग्राम है।

और यहां पर बहोत सारे लोग आए हुए हैं।

काफी सारे लोग यहां पर आते हैं।